पीछे एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैइसमे एक लाईट भी जल रही है।

और पीछे की तरफ आ कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

दो तीन आ ऑटो खड़े हुए है कुछ लोग ऑटो मे बैठे हुए है।

कुछ लोग बाहर रोड पर खड़े हुए हैं।